यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ का फोटो दिखाया जा रहा है। यह मूर्तियाँ बहोत सारी मूर्तियाँ जैसी शिव --

यह एक बस का फ़ोटो दिखाया जा रहा है। यह बस देखने में बहुत ही सुन्दर और अच्छा लग रहा है।

बोहोत ही आदमी बस लेते हैं क्योंकि इसमें बोहोत ही आदमी सवारी अपना गुजारा करते हैं बस से।

और ये बहुत ही अच्छी बात है।